इस तस्वीर में एक इंडियन पोस्ट यानि भारतीय डाक का पोस्टर लगा हुआ है जिसके नीचे बहोत सारी बाइके खड़ी है और एक व्यक्ति भी --

यह तस्वीर किसी शिक्षण संस्थान की है जहाँ कुछ समझाया जा रहा है कुछ लोगो को कुछ निर्देश देकर और एक आदमी इसी काम को कर रहा है।

ये तस्वीर में सुपर कम्प्युटिंग सेंटर को दिखाया गया है जो कि एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है और इसके पास में एक रोड भी हैं।

इस तस्वीर में इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट को दर्शाया गया है जोकि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और पास में इसका बोर्ड लगा हुआ है।

तस्वीर में एक व्यक्ति इसमें दिखाई पड़ रहा है जो कि एक बोर्ड के पास में खड़ा है और एक नीले रंग का बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे बहोत सारे पेड़ भी हैं।